और कुछ बाज बलि लगी हुई है।

एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की लाइट लगी हुई है।

एक सीढ़ी बनी हुई है एक लोहे का शटर लगा हुआ है।

शीशे पे एक रेड कलर का लाल निशान लगा है।

इसपे व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई है।

ये एक सैलून है सामने दो कुर्सियां लगी हुई है वो रेड कलर की--

दो शीशे लगे हुए हैं शीशे के बाजू में ढ़ेर सारी लाइटें लगी हुई है।

सामने एक बड़ा सा पुल बना हुआ है।

ऊपर कुछ लोहे के लाल कलर के खंभे लगे हुए हैं।

ये एक मैदान है जमीन पे हरी हरी घास है।

एक वाइट कलर का लोहे का खंभा लगा हुआ है जालीदार।

सामने कुछ ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं।

जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं हाथ ऊपर करके।

सामने कुछ मशीने रखी हुईं हैं ब्लैक कलर की।

सामने एक लोहे का टेबल बना हुआ है उस पर कुछ गिलास रखे हुए हैं।

और एक रैली बनी हुई है बालकनी पे लोहे की।

नीचे एक काउंटर बना हुआ है इस शीशे का--

सामने एक बॉक्स रखा हुआ है पीले कलर का प्लास्टिक का।

कुछ लोग स्टेज पे खड़े हैं और हाथों में गिटार लिए हुए हैं।

इसमें ढेर सारी ब्लैक और पीले कलर की लोहे की मशीनें रखी हुई है।

सामने एक खंभा लगा हुआ है। उसपे बैनर लगा हुआ है।

सामने एक खंभा लगा हुआ है उस पे एक बैनर लगा हुआ है।

जिसपे दो ब्लू कलर के खंभे लगे हुए हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है सामने कुछ कुर्सी और मेज लगी हुई है व्हाइट कलर की।